यहां पर खड़ा हुआ दिखा--

ऑफिस मे बहोत सारी कुर्सिया भी रखी हुई दिखाई दे रही--

ये मेरे सामने एक बड़ा सा शोरूम दिखाई दे रहा हैं।

इन पर क्रेन भी छपी हुई दिखाई दे रही है।

ए मेरे सामने स्किन हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

वो गुगलदस्ता भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

गार्डन की बाउंड्री लोहे के पाइप से हुई है गार्डन में बहुत सारे पुल भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

और यहां पर कुछ तरबूज भी रखी--

कमरे में बोहोत सारी बैटरियां भी रखी हुई दिखाई दे री है यहां पर बहुत सारे इनवर्टर भी रखे हुए दिखाई दे रहे--

और यहां अमेरिकन स्टोर दिखाई दे रहा है यहां सामने एक बेड भी लगा दिखाई दे रहा है।